यह पूर्णिया का कोर्ट है यहाँ पे अ रात का समय है और यहाँ लाइट वैगरह भी काफी।

अम अच्छा है जला है यहाँ अम बाहर कुछ ऑटो रिक्शा और लोग दिखाई दे रहे हैं ।

बहुत अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है कुछ जो महिलाएं हैं वो।

और शॉल है स्टाल है और यहाँ पे जो शॉपकीपर है बैठ के कस्टमर को कपड़े दिखा रहे है।

यहाँ यहाँ पे फोर व्हीलर वगेरा पार्क हुआ है जैसे की बस ट्रक |

अम बत्तख वगेरह बनाया गया है जो स अम सफेद कलर में है और --